इस फोटो शूट में दो लोग हैं।

लेफ्ट साइड में एक ऐ_सी है।

और सिंक के बगल में एक स्टोरेज के लिए कबड भी है।

यहां बीच में एक गड्ढा है।

ये एक आउटडोर चिल्ड्रंस कलरिंग कंपटीशन है।

ये टेंपल जो जोशनापुर दिऊं अरुणाचल प्रदेश में है।

बैंक के बगल में उसका ए_टी_एम भी है।

यहां जेरॉक्स प्रिंट आउट लेमिनेशन और फोटो जैसी सर्विसेज अह अवेलेबल हैं।

ये रेस्टोरेंट लकड़ी से बना हुआ है।

स्टोर के सामने में कैरम बोर्ड्स और क्रिकेट बैट्स भी अवेलेबल है।

ये फोटो एक रूम के इंटीरियर का है।

और स्टोर में बेडशीट्स भी अवेलेबल है।

और ग्राउंड में साइट में एक बाइक भी पार्क की हुई है।

ये एक नेचुरल जगह पे सनसेट का व्यू है।

ये एक पब्लिक पार्क का फोटो है।

यह एक बिल्डिंग का फोटो है।

लेफ्ट साइड में टॉवल्स और हैंड बैगस भी हैं।

लेफ्ट साइड में एक सी_सी_टी_वी मॉनिटर भी है।

यह खंडो ध्रुवा संगमों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो की तवांग में है।

ये एक कंस्ट्रक्शन मार्बल टाइल्स शॉप है।

उसके ऊपर उसने रेड कलर का क्लॉथ पहना है।